ये एक बैंक है। बैंक के बगल के ए.टी.एम. है। ए.टी.एम. मे दो आदमी है। बैंक के अंदर से आदमी निकल रहा है।

ये फल की दुकान है। यहाँ पर संतरे अनार केला सेब --

ये एक-क कपड़े की दुकान है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े लगे हुए है मूर्तियों मे और बाहर रोड पर गाड़ियां जा रही है।

--और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई है और एक आदमी उसको बेच रहा है और--

-- और यहां पे चेयर और टेबल रखे हुए है जो कि काले कलर की है और लाइटे लगी हुई है और लैंप --

पर एक आदमी गुफा के अंदर घुस रहा है और उसने काले कलर की पैंट पहनी हुई है। और--

यहा पर सांता क्लॉज़ हे और सब सेंटाक्लॉस की को टोपी लगाए हुए हें बच्चे |

दो लड़कियां परी बनी हुई हैं । एक आदमी माइक पर कुछ बोल लहा है और परदे लगे हुआ हैं । नीले कलर के गुब्बारे हैं ।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

चे नीचे भी जमीन में पड़े हुए है गुब्बारे और इसने पीले कलर की हैट लगाई है।